डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कृषि विश्व विद्यालय है।

जो अपना फोटो खिचवा रहा है।

लाइटिंग लाइट लगा हुआ है ए.सी. लगा हुआ है पंखा लगा हुआ है।